मैदान में एक बड़ा सा टी_वी लगा हुआ है जो की सफेद कलर का दिख रहा है।

एक बड़ा सा मकान है मकान के बीच में एक मैदान है जिसमें एक कमरा बना हैं।

एक बड़ा सा पंडाल है पंडाल में बड़ा सा स्टेज हैजिसमे बहुत बड़ी सी मूर्ती है अगल -बगल छोटी-छोटी मुर्तिया है।

एक रास्ता है रास्ते के बगल में एक मेन गेट है जिस में लिखा है महावीर द्वार नीचे ब एक बड़ा सा गेट लगा है जिसका कलर ब्लैक नीला सफ़ेद है।

एक रास्ता है रास्ते के बगल मे बड़ा सा मकान है निचे उसके ब्लैक कलर का गेट लगा है जिसमें लिखा है जैन भवन।

पेड़ पौधे है जो की हरे भरे है एक कार है कार की ऊपर कवर लगा है मकान मे बहुत सी खिड़कियाँ है।

पेड़ पौधे है जो साइड में कुछ बड़े छोटे हैं वह हरे भरे हैं सामने कुछ मकाने है।